बाहर की तरफ नज़ारे देखने के लिए जाते हैं बाहर घूमने जाते हैं वहाँ पर ऐसा नज़र आता है।

अ किले जैसी और दीवारें और अ पहाड़ पेड़-पौधे लगे हुए --

छत पर जो लगाते हैं वो बड़ा सा एक प्लांट टाइप का लगा है।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक जो आदमी है उसके हाथ में एक --

गाड़ियां खड़ी है सामने दुकानें दिखाई दे रही हैं जो कुछ बंद हैं कुछ खुली हुई हैं।

जो बुद्ध बुद्ध बोलते हैं बुद्ध देवता की ऐसी मूर्ति लग रही है।

और उसकी छत भी दिखाई दे रही है और जो बाहर कुछ लड़ियाँ जो --

इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है इस तस्वीर में कि एक आदमी जो है वो काम कर रहा है लकड़ी से जो फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है।

इस तस्वीर में हम जब भी कभी अपना --

मोबाइल चेक करते हैं ये न्यू मोबाइल लेते हैं नया मोबाइल लेते हैं उस वक्त हम सेल्फी लेकर देखते हैं।

ये इसकी बिल्डिंग है और काफी अच्छी बड़ी बिल्डिंग है।

और कुर्सियाँ लगी हुई है पास में बैठने के लिए और ये एक डॉक्टर का जो होता है --

अ इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अ एक बहोत बड़ा पेड़ है जिसके पास--

इस तस्वीर में हमें जो नजर आ रही है एक कच्ची ईटों की दीवार है और उसके नीचे चादर की एक--

दुकान है जिसका नाम है न्यू स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप --

मतलब बड़ी गाड़ियाँ और आगे की तरफ ऑटो नज़र आ रहे हैं हरे पीले ऑटो ।

तथा बुलेट का सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें।

जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और दूर-दूर तक बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं।

अ ये अ कोई ऐसा लग रहा है कि सरकारी जैसे कार्यालय जो होता है जहाँ पर अधिकारी वगैरह खड़े होते हैं --

उनकी ये गाड़ियाँ नज़र आ रही है दो-तीन बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं।

और ये सरकारी विभाग के जो कर्मचारी शायद उनकी भीड़ ऐसी लग रही है बहुत सारे आदमी औरत खड़े --

पीले लाल और कुछ जामुनी कल अ रंग के है और ये काफी अच्छे दिख रहे है छोटे छोटे गमले रखे हुए--

और उसका एक बोर्ड लगा हुआ है पीले रंग का उस पर नाम लिखा हुआ है चनपटिया।

उसका उसके बीचों बीच एक अह महापुरुष की तस्वीर भी अह मूर्ति भी बनी नजर आ रही है।

और उसके एक साइड कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बना हुआ है मंदिर या कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है।

ये एक दवाइयों की दुकान मेडिकल शॉप जिसे कहते हैं हम वो है उसमें कई सारी बॉटल्स और मेडिसिंस रखी हुई हैं।

उसका नाम है देवेश चिकित्सा केंद्र डॉक्टर विभा कुमारी।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है हमें कि एक बगीचा है उस बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

उस झूले पर जो एक बच्चा है वो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है और झूला झूल रहा है।